आदी हमें एक नदी बेहती हुई दिखाई दे रही हैं।

उसमें क्रॉस का चिन्ह बना है कुछ पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

जिसका रंग सफेद नजर आ रहा है।

जिस पर सफेद रंग की चादर बिछी है।

एक बड़ा सा दीवार नजर आ रहा है।

दो बड़े पंखे भी यहां लगे हुए हैं।

यहां हमें एक क्लास रूम दिखाई दे रहा है।

गुलाब के फूलों की हार और भी अन्य फूलों की हार नजर आ रहे हैं।

साथ ही कुछ बड़े गुलदस्ते भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

एक बड़ी सी नदी को देख पा रहे हैं।

कुछ लोग यहां पर तरी में बैठकर योगा करते हुए नजर आ रहे है।

एक बड़ी सी तलाब को देख पा रहे हैं।

साथ ही कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ गधे और घोड़े जैसे खिलौने रखे हुए हैं।

एक बड़े से ऑडिटोरियम को देख पा रहे हैं।

एक बड़े से स्टेज को देख पा रहीं हैं।

जिस पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

कुछ बड़े पेड़ों को देख पा रहे हैं।

आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है।

साथ ही यहां पर कुछ चेयर ओर टेबल लगी हुई है कुछ लोग यहां फोटा लेते हुए भी नजर आ रहे है।